ये एक उत्तर रेलवे चंदी में चंडीगढ़ में शुभ मंदिर हैं देखने में तो बहुत प्यारा लग रहा हैं पर--

डमबस ब्लू कलर की है वाइट कलर का एक दम वा ब्लू एंड वाइट कलर के है सीसे--

ये कैफ़े जी_क्यू_सी देख ने में कितना प्यारा मन लग रहा है ऊपर से लाइट वगेरा भी है लैंप छोटा छोटा एक दम चेयर टेबल --

ऐ टेबल एक दम शीशे वाला हैं ऊपर से रेड कलर का मार्बल ब-ब हैं चेयर भी मस्त एक दम डिजाईन देखने में--

और येलो मतलब बहोत सारा एकदम अलग अलग कलर का फ्लावर वगैरा है।

ये एक घर है पूरा ग्रे कलर का है इसमे ए_सी वगेरा सब है जे_सी_बी वगेरा सब साइड में काम वगेरा चल रहा है साइकल स्कूटर बाइक सब है डस्टबिन भी लगा रखा है।

और जो पेड़ वगैरह है वो भी काफी लंबे लंबे है और बीच में क्रिकेट स्टेडियम वगैरह है।

ये एक दूकान है लगरा की मतलब मिठाई का दूकान है नॉन वेज वगेरा सब मिलता है यहा पे लिखा हुआ है इसका नाम है नेगलिटी हल हर्ट करके और इसमें मतलब बहोत इसमें बुक बे बोर्ड लगा हुआ है जिसमे मतलब सब का अलग अलग प्राइस है जेसे की छोले भटूरे दो पिस पचास रुपे राम-राजमा चावल जेसे की पचास रुपे करी चावल पचास रुपे --

और इसके अंदर मतलब एक बोउ चकोर बाउंड्री बना रख मतलब वो चबूतरा टाइप में बना रखा है जिसमे पेड़ है छोटा सा--

साइड में भी पेड़ है जिसका आधा ही फोटो आया हुआ है लड़के लोग सब खेल रहे है।

ये एक मॉल है बड़ा सा जिसका नाम है फ़ास्ट फ़ूड सेण्टर और यहा पे मतलब बहोत ज्यादा--

सब पेप्सी वगेरा मिलरा पेप आईस क्रीम कोल्ड ड्रिंक पेप्सी अनलिमिटेड मिल्क्व जेसे की बस स्टैंड टाइप में होता है हेना--

फल सब्जी सब कुछ मिल रहा है और इसके अलावा फ़ास्ट फ़ूड कोको --

फ़ास्ट फ़ूड सेण्टर साइड में कोको कोला का बैनर भी है आइसक्रीम वगैरा सब है यहाँ पे--

गोल्डन सा चाँद मतलब बो लोहे वाली स्टील वाली--

और सारे मतलब रेड कलर के है पीछे पटिया वगेरा है जेसा लगरा की एक फैक्ट्री टाइप में छोटा सा कोई--

इस्फुला वगेरा लगा रखा है जिसपे दो खम्बे है उसमें एक रखा हुआ पेड़ पोधे है साब--

और साइड में मतलब बहुत सारी बिल्डिंग्स भी हैं बहुत सारी ये लाइन्स एक दम एक दुसरे से कनेक्टेड सारी बिल्डिंग बीच में --